उसके बगल मे एक टेबल रखा गया है।

उसके बगल में एक आदमी भी है जो लाल कलर का पगड़ी पहने हुए है।

यहा पर बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं।

जिसमें बहुत सारे अंगूरे रखी गई है।

यहा पर लाइटे लगाई गई है।

वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई दे।

यह एक विशाल घर का दृश्य है।

इसका उद्घाटन हो रहा है।

इसको बहुत बैलून से सजाया गया है अलग अलग कलर से।

अगल बगल बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है जिसमें से बाइक भी है।

और एक फोर व्हीलर जो वाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है।

और भी बहुत अलग अलग तरह की सामाने रखी गई है।

इसके बगल में एक ब्लैक कलर का कुत्ता है और उसके बगल में एक झोपड़ी है।

यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान रखे गए हैं।

ऊपर एक प्रिंटर दो प्रिंटर भी दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ एपसन ।

के बगल में एक बैनर बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है ब्रदर ।

इस घर को लाल कलर से पेंट किंया हुआ है।

इसके अगल बगल बहुत सारे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत तरह के सामान रखे गए हैं।

यहां पर बहुत सारा मोबाइले रखी गई है।

यहां पर लाइटे लगाई गई है और बहुत सारे बैलून अलग अलग करके लगाए गए हैं।

यहां पर बहुत सारी सब्जियां लगाई गई हैं।

बहुत सारे लाइटें भी लगाई गई है।

इसमें लिखा गया है जगदंबा इंटरप्राइजेज ।

घर के अंदर बहुत सारे सामान रखे गये हैं कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है।

कुछ कुर्सियां लाल कलर की हैं।

कुछ भूरे कलर की भी है।

यह एक जिम सेंटर का दृश्य है।

यहां पर बहुत अलग अलग तरह के जीम समान रखे गए हैं।

बगल में बहुत बड़े-बड़े घर भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे कचरे भी दिखाई पड़ रहे हैं।